एक ओरेंज शर्ट में और जीन्स में जा अ अंदर कोई एक आदमी जा रहा है साइड में एक च चो खाने की शर्ट पहने हुए आदमी है नीचे कुछ मिट्टी डली हुई है कुछ कंकड़ डले हुए है साइड में। ये --

पीछे ब्लैक कलर के परदे हैं। साइड से कुछ ब्लू कलर का दिख रहा है। साइड से कुछ लाइटिंग दिख रही है। नीचे एक कार्पेट बिछी हुई है ब्लैक कलर --

सामने एक लाल कलर का घर है उसमें जाली लगी हुई है सामने एक गेट है जिसमें सामने एक कट्टा रखा हुआ है एक आदमी है जोकि ब्लू कलर की टी शर्ट और ग्रे कलर --

तस्वीर में कुछ लोग बैठे हुए हैं। वाइट कलर की टी शर्ट में एक आदमी है। ब्लैक कलर का पेन्ट पहने नीचे अब बड़ी सी चौड़ी सड़क है। पीछे कुछ मैदान है जो की स मिट्टी का मैदान --

बगल मैं एक खिड़की है। सामने एक दीवाल है। सामने एक परदा टंगा हुआ है बेंगनी कलर का वो उसके पैर को चेक कर रहा है डॉक्टर सामने कुछ मशीन रखी हुई है बगल में नीचे उस चेक कलर की चेक की नीचे एक कार्पेट बिछी हुई है साइड से कुछ --